इस तस्वीर में सामने एक बहुत बड़ी प्लेन दिखाई दे रही है जो ब्लू एंड वाईट कलर की है।

इस तस्वीर में सामने एक ईमारत दिखाई दे रही है जो पीले रंग की है।

सामने एक ईमारत दिखाई दे रही है जो ग्रीन कलर कि है और बलूंस और फूलो से डेकोरेट की हुई है।

इस तस्वीर में एक बहोत बड़ी नदी दिखाइ दे रही है बीच में एक व्यक्ति जो नाव चला रहा है।

इस तस्वीर मे सामने एक रास्ता नजर आ रहा है जिसके किनारे कुछ पेड़ पौधे नजर आ रहे है साईड में एक नदी भी दिखाई दे रहा है।